चित्र में आप देख सकते हैं कार का टायर ये धो रहे है पंक्चर हो गया है शायद उसको पंचर डाल रहे हैं फिर साथ में एक बूढ़ा आदमी भी है।

चित्र में आप देख सकते हैं ये भगवान की मूर्ति है ये-ये मूर्ति के सामने बहोत सारे भक्ति अ-भक्त बैठे हुए हैं।

और दूसरा पीछे की तरफ गिटार पकड़ा हुआ है और बहोत सारे साइकल वगेरा हैं यहाँ पे रंग बिरंगी।

ऊपर आसमान नीला उजला है बिल्डिंग है इमारतें हैं पेड़ हैं और ऊपर एक जगह है बेठने की।

सूरज डूबता हुवे है और उपर आसमान नीला है और सूरज डूब रहा है और हरियाली है शाम-सुम है यहां पे बोहोत अच्छा वातावरण है।

नीला कलर का यहाँ पे पैंट किया हुआ है आगे भी की लकडिया है एक ड्रम है और बहोत सारी मट्ठी पत्थर सब पड़े --

इस तस्वीर में देखिये आ बहोत बड़ा पर्वत है अ बिजली के खम्बे या तारे भी हैं बहोत सारी गड़ियाँ खड़ी हुई हैं कार है।